जेसे के रेड व्हाइट योलो इन सबसे डेकोरशान की हूइ हे। मंदिर की एक के नीचे पुजारी वी दिख रहा है और एक सामने झूमर भी लगा हुआ है।

नो रिफ्यूज़ल भी लिखा हुया हे टैक्सी की पीछे एक छोटी सि चाय की दुकान हे उहा कई सारे लोग भी एकठ्ठे हुए हुए--

इये एक स्टोर हे इसी स्टोर मे नीचे मे--